ये शायद कोई तेल निकालने की मशीन है यहां पर लोग तेल निकल रहे हैं शायद ये--

ये एक ज्वेलरी शॉप है सो यहां सोने चांदी--

तथा ये विद्यार्थीयों को कॉलेज से लाने एवम लेजाने के लिए उपयोग मैं की जाती है।

देखने पर ऐसा मालूम होता है कि यह एक गाड़ी का शोरूम है जहां पर लोग विभिन्न प्रकार की गाड़ियां खरीदने आते हैं।

यहां पर बहोत सारे औरतें योगा कर रही हैं और योगा हमारे जीवन के लिए स्वास्थ्य एवं लाभदायक होता है।

जो लोगों के लिए अच्छे साबित हो सकते हैं।

परे प्रोजेक्ट है जिसमें एनवायरमेंट तथा इन लोगों के आधुनिकीकरण के बारे में दर्शाया गया है।

देखने पर ऐसा प्रतीत होता हैं की यह कोई स्कूल द्वारा की जाने वाली रंगोली प्रतियोगिता हैं।

पेड़ सुंदर से कटाए काटे गए हैं तथा नारियल तथा शोपीस के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं तथा यह सुनसान है।

यह एक बहोत ही रोचक तथा शानदार नजारा है यहां पर एक बहोत बड़ा तालाब तथा विभिन्न प्रकार के--

एक ट्रक खड़ा हुआ है जो पेट्रोलियम ले जाने के काम आता है।